गार्डन हैं रोड हैं जिसमें ग्रीन घास लगी हुई हैं एक लॉक लगा हुआ हैं।

एक गार्डन बना हुआ हैं जिसमें कई सारे पेड़ लगे हुए हैं और दीवाल हैं गेट हैं ।

गाड़ी है मारुति है मंदिर है।

और एक बिल्डिंग है वायर्स हैं सब--